किसी का मेल लिखा जा रहा है। --

ऐ.टी.ऍम. बैंक में पैसों की लेन-देन की जाती है एस.बी.आई. बैंक है यहां पे कोई।

यहाँ भगवान की पुजा की जाती है एक टेम्पल है एक पूजा का मंदिर है।

भगवान है यहाँ इसमें ये मंदिर है।

और यहाँ पर लोग बाग़ घूमने भी आते हैं फूलों के मेहक से यहाँ पे वो --

सभी प्रकार के यहाँ पे देवते विरजमान होते है।

जैकेट पोलीस सभी पोलीस की जाती है दुलाई की जाती है।

अपने अपने गाड़ियों को निकालने के लिए ऑटो वाले बस वाले सभी --

इसके अंदर दो लड़के नहा रहे है। एन्जॉय कर रहे है।